drupal site management पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगेreports को देखना drupal अपडेट करना modules और themes अपडेट करना और पुराने वर्जन को फिर से स्टोर करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम drupal 8 और firefox वेब ब्राउजर आप अपने पसंद का कोई भी वेब ब्राउजर उपयोग कर सकते हैं
site management क्या है site management हैः बाद में drupal के कोड को अपडेट करना है जो कि core modules और themes है
errors का निरीक्षण और फिक्स करना यूजर की गतिविधि के बारे में पढना आदि
अपनी साइट खोलें जिसे हमने पहले ही बनाया है
site management का शुरूआती प्वाइंट reports menu है यदि आप को अतिरिक्त सहायता की जरूरत है तो आप help menu से परामर्श the सकते हैं
reports पर click करें हम reports की एक सूची देखते हैं जिसे हम अपने drupal site पर प्राप्त कर सकते हैं
available updates पर click करें
यदि कुछ भी लाल background में है इसका मतलब है कि यहाँ security update है और हमें इसे जल्दी ही अपडेट करना चाहिए
यदि यह पीले रंग में है तो यह security update नहीं है लेकिन यहाँ एक उन्नत version उपलब्ध है
settings टैब पर हम drupal में फिक्स कर सकते हैं कि updates के लिए कैसे बार बार जाँचना है
हम इसे खुद को email भेजने के लिए भी send कर सकते हैं यदि यहाँ updates उपबल्ध है ऐसा करना अत्यधिक अनुशंसित है
reports में recent log messages हमें drupal में पाये गए errors की सूची देता है हम थोडी देर में एक बार फिर से इन पर ध्यान देंगे
reports में status report drupal द्वारा मान्य installation या कंफिगरेशन समस्याओं को दर्शाता है
उदाहरण के तौर परमैं mysql 5630 पर हूँ मेरा drupal core status अपटूडेट नहीं है मेरा database अपटूडेट है आदि
reports में top access denied errors और top page not found errors भी महत्वपूर्ण हैं
ये सुनिश्चित करने का सरल तरीका है कि हमारी site सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है
top search phrases हमारी site के search forms में अक्सर इस्तेमाल किये गए शब्दों को प्रदान करता है
अपनी drupal website के reporting section को समझना अपनी website का रखरखाव करने का पहला step है
अब drupal को अपडेट करना सीखते हैं
available updates पर click करें
हम देखते हैं कि drupal core का वर्तमान version 810 है और अनुशंसित version 816 है
यह recording के समय की स्थिति है
आप यहाँ भिन्न अनुशंसित version देख सकते हैं
ध्यान दें कि drupal में वर्तमान अनुशंसित version का पता लगाने के लिए आपको internet connection की जरूरत होगी
drupal core अपडेट करते समय code files के manual downloading और अपनी site पर इसे लागू करने की आवश्यकता है
हम step by step upgrading प्रक्रिया देखेंगे
निम्नलिखित steps bitnami drupal stack के लिए उचित हैं
लेकिन अधिकांश steps किसी any drupal installation के लिए उचित है
step no 1: पहले अपनी site को maintenance mode में रखे
उसके लिए maintenance mode पर जाएँ और development में maintenance mode पर click करें
put site into maintenance mode option को check करें
save configuration button पर click करें
जब maintenance mode सक्रिय होता है केवल administrators login कर सकता है
गलती से यदि आपने admin loggedout किया है तो आप अपने homepage पर url के बाद/user का उपयोग करके login कर सकते हैं
अन्य लोग message देखेंगेsite is under maintenance
step no 2: वर्तमान वर्जन के डेटाबैस का बेकअप लें
अपना bitnami drupal stack control window खोलें
control window को कैसे खोलें यह जानने के लिए installation of drupal tutorial का अनुसरण करें
open phpmyadmin button पर click करें
हम phpmyadmin पेज पर पुनःनिर्देशित होते हैं
default यूजरनैम root है
drupal admin password और phpmyadmin password दोनों समान हैं
अतः यूजरनैम root type करें और फिर अपना drupal admin password type करें फिर go button पर click करें
बेकअप लेने के लिए पहले ऊपर के panel पर export button पर click करें
फिर export method में custom चुनें
database सूची में bitnami _ drupal8 चुनें
output section में filename template में drupal810 लिखें और compression में gzipped चुनें
filename आपके वर्तमान version के आधार पर भिन्न हो सकता है
object creation options में add drop database statement options पर checkmark करें
add drop table option पर checkmark करें
नीचे scroll करें और नीचे go button पर click करें
file को सेव करने के लिए ok पर click करें
अपने downloads folder पर जायें और बेकअप file drupal810 sql gz देखें
step no 3: हमें सभी सर्वर को शटडाउन करना चाहिए
सभी running servers को बंद करने के लिए bitnami drupal stack control window पर जाएँ
manage servers टैब पर click करें और फिर stop all button पर click करें
step no 4: welcome टैब पर क्लिक करें औऱ फिर open application folder बटन पर क्लिक करें
यह फाइल browser में खुलेगा
folders apps फिर drupal और अंत में htdocs पर जाएँ
step no 5: हमने drupal के वर्तमान वर्जन के लिए कोड का बेकअप लेने के लिए फोल्डर बनाया है
वर्तमान version की संख्या के साथ folder को name दें
फिर database file को drupal810 folder में डालें
step no 6: htdocs फोल्डर पर वापस जाएँ
फिर core और vendor folders को और बाकि सभी फाइलों को cut औऱ past करके बेकअप folders drupal810 में स्थानांतरित करें
यह दोनों database और code को एक स्थान पर रखता है
यह core के पुराने version की बेकअप copy है यदि आप वापस आते हैं
step no 7: अपने htdocs फोल्डर पर जाएँ
अब हमें drupal का नया version download करना होगा
अपना web browser खोलें और प्रदर्शित link पर जाएँ
drupal 8 के नए अनुशंसित version को download करें
इस recording के समय यह drupal core 816 है
आपके देखते सयम यह version भिन्न हो सकता है
इसे खोलने के लिए इस पर click करें
download करने के लिए tar gz या zip पर click करें
इसे सेव करने के लिए ok पर click करें
अब अपने downloads folder पर जाएँ और अपने htdocs folder में drupal zip file स्थानांतरित करें
drupal 816 zip file इस tutorial के webpage में code files link में दी गई है
यदि आपके पास internet connection नहीं है तो कृपया इसे download करके उपयोग करें
step no 8 : फाइल को unzip करें यह htdocs फोल्डर में drupal816 फोल्डर बनायेगा
खोलने के लिए इस पर double click करें
नए drupal folder से core और vendor folders और अन्य सभी files को htdocs folder में स्थानांतरित करें
step no 9: bitnami drupal stack कंट्रोल विंडो पर जाएँ
tab manage servers टैब पर जाएँ और सभी servers को शुरू करने के लिए start all button पर क्लिक करें
step no 10: हमारी साइट पर जाने के लिए welcome टैब go to application बटन और access drupal लिंक पर क्लिक करें
reports और status report पर जाएँ
यहाँ हम drupal version संख्या की पुष्टि कर सकते हैं और यह नवीनतम में से एक है
लेकिन हमारा database outofdate है
हर बार वहाँ core module या theme अपडेट्स में database अपडेट किया गया है
step no 11: डेटाबैस को अपडेट करना सीखते हैं
extend menu पर जाएँ और update script link पर click करें
continue button पर click करें
यह बताता है कि हमारे पास लंबित updates हैं आप के लिए यह अलग हो सकता है
apply pending updates button पर click करें
administration pages link पर click करें
यदि यहाँ कोई errors नहीं है तो हमने core को सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया है
step no 12: go online लिंक पर क्लिक करें
put site to maintenance mode option से checkmark हटाएँ
save configuration button पर click करें
यह सभी यूजर्स के लिए site को online mode में वापस लायेगा
bitnami installation के कार्य के लिए काफी steps हैं
यदि आपने अन्य तरीकों का उपयोग किया है तो अधिकांश steps bitnami sections के अलावा समान होगें
अब themes और modules अपडेट करना सीखते हैं
यह core अपडेट की तुलना में सरल है क्योंकि drupal इसे एक button पर click करके कर देगा
कभी कभी हमारे पास किसी core अपडेट के बिना केवल modules या themes अपडेट होगें
step no 1: reports मैन्यू पर और फिर available updates पर क्लिक करें
update टैब पर click करें
यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ themes औऱ modules अपडेट करने के लिए है
उन सभी को चुनें
फिर download these updates button पर click करें
सुनिश्चित करें कि performing updates in maintenance mode के लिए checkbox on है
अपडेट को लागू करने के लिए continue button पर click करें
यह code अपडेट करेगा और साइट को online mode पर ले जायेगा
step no 2: run database updates लिंक पर क्लिक करें
यदि आपने database का बैकअप नहीं लिया है तो लें जैसे हमने पहले लिया
continue button पर click करें
यह database को अपडेट करेगा जैसे कि हमने core अपडेट के लिए किया था
apply pending updates button पर click करें
administration pages link पर click करें
drupal साधारणत: site को वापस online mode पर ले जायेगा
अगर ऐसा नहीं है तो आप पेज के शीर्ष पर एक go online option देखेंगे
step no 3: अंत में जाँचें कि सब कुछ अपnoडेट है
reports menu और available updates पर click करें
यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा drupal core modules और themes सब कुछ अपtodate है
फिर सीखते हैं कि अपने पुराने version पर कैसे लौटना है
यदि आपका अपडेट किसी कारण से विफल होता है आप नहीं जानते कि case तो आप पिछले version पर वापस जा सकते हैं
इसके लिए हमें पुराने core औऱ database को restore करने की जरूरत है
step no 1: साइट को maintenance mode में रखें
step no 2: drupal stack control विंडो से सभी सर्वर को बंद कर दें
step no 3: अपने htdocs फोल्डर को खोलें
core और vendor folders और अन्य नियमित files को drupal816 folders में डालें
htdocs folder में जाएँ और पुराने version के folder को खोलें
फिर core और vendor folders और अन्य नियमित files को drupal810 से htdocs folders में डालें
step no 4: drupal stack control विंडो से apache और mysql सर्वर्स को शुरू करें
step no 5: पुराने डेटाबैस को रिस्टोर करें
drupal stack control window से phpmyadmin पेज खोलें
ऊपर import button पर click करें
browse button पर click करें
यहाँ database file को चुनें
फिर नीचे go button पर click करें
step no 6: अंतिम step जाँचे कि क्या हम पुराने वर्जन पर आ गए हैं
अपनी drupal site पर आएँ
reports menu और status report पर click करें
यहाँ आप देख सकते हैं कि अब आपका drupal version 810 है
ध्यान दें कि हम केवल core औऱ database के पुराने version पर लौट सकते हैं
modules और themes drupal द्वारा अपडेट हैं
हमने step 6 में इसकी copy नहीं बनाई है तो हम यहाँ पुराने versions को नहीं देख सकेंगे
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में पहुँच गए हैं
संक्षेप में
इस tutorial में हमने site management के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सीखाः रिपोर्ट्स को देखना और विश्लेषण करना database और code का बैकअप लेना
drupal core अपडेट करना modules और themes अपडेट करना और बैकअप वर्जन को रिस्टोर करना
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है
कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद